यह पानी में बहुत ही बड़ा घर बना हुआ है पानी के बीचों-बीच घर बना हुआ है ये बहुत ही सुन्दर है इसके बगल में है उसमे बोहोत सारे लोग है उसके बगल में।

स्टेपलर रखा हुआ है जो कागज़ को पिन मार सकते हो कलम रखा हुआ है जिस से आप लिख सकते हो अपने साइन कर सकतें हो आपकी जहाँ जरूरते है वहॉँ पे आप साइन कर सकते हो ये ओफिस --

ये अगर ये नहीं रहते तो हमारे जीवन में तकलीफ़ हो सकती है डॉक्टर हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं हमे इनकी इज्जत करनी --

तो आप इसे खरीद सकते हो इस गाड़ी की यूज कहीं जाने में किया जाता ऑफिस जाओ घर जाओ कहीं भी जा सकते हो।